जो कि सभी के सभी अ ब्लू कलर की है बिल्डिंग के बाहर बहोत सारा लोग भी नजर आ रहा है बिल्डिंग के बाहर दो पुलिस ऑफिसर भी खड़ा हुआ है बिल्डिंग के चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौध लगा हुआ है।